दिस इज अ एक्वारियम एंड पेट शॉप --

और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं।

स्नो देख के ऐसा लगा रहा हैं वॉव कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा--

सीनरी है वो भी नाइट का व्यू है ये किसी के घर का वेरी वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल --

जहां पर लोग आकर एक्सरसाइज करते हैं।

या फिर आप मंदिर में भी इसको--

और पूजा कर सकते हैं। यहां पर लोग वरमालाएं बेच रहे हैं।

ट्राई कर रहे हैं जिससे वो पता लगा सके कि कौन इस कंपटीशन का विनर है।